एक चढ़े हुए हैं यहां पर।

कोई ब्रिज के से पानी निकल रहा है नीचे में रोड भी है बहुत अच्छा रोड है ये बहुत अच्छा जगह भी दिख रहा है बहुत मस्त दिख रहा है।